यहां पर पर्दा भी लगा हुआ दिखाई देता है।

दुकान का रंग सफेद है यहां पर कुछ अन्य सामान भी रखा गया है पंखों का रंग काला और सफेद है।

यहां पर टेंपो भी खड़े हुए हैं यहां पर कार भी खड़ी हुई है यहां पर एक रेहड़ी भी खड़ी हुई है।

मंदिर की छत पर टैंकर रखें गए है टैंकर का रंग हरा है।

यहां पर घड़ी भी लगी हुई है। यहां पर एक पेन्टीन भी लगी हुई है।

यहां पर एक ओम बनाया गया है।

यह एक ऑफिस जैसा दिखाई देता है।

पुल के नीचे बड़े स्टैंड बने हुए हैं।

पक्षी का रंग लीला दिखाई दे रहा है।

यह कॉलेज जैसा दिखाई देता है यहां पर कुछ आदमी भी दिखाई दे रहे हैं।

यह एक बहुत बड़ी बिल्डिंग दिखाई दे रही है।

यहां पर बैग भी रखे हुए हैं।

दुकान में अन्य सामान रखा गया है यहां पर बल्ब भी लगा हुआ है।

रोड के बराबर में कुछ पेड़ खड़े हैं यहां पर सीमट का बनाया एक बोर्ड दिखाई देता है।

यह एक फैक्ट्री जैसा दिखाई देता है यहां पर गमले भी रखे हुए हैं।